यहाँ पे छोटी-छोटी घास लगी हुई दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ लगी हुई दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक बड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है सड़क में कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे है बिजली के वायर दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहोत सारे लोग--

और मतलब की यहाँ पे एक बगीचा दिखाई दे रहा है जिसको जाली से बाउंड्री किया हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे उसके अंदर बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ छोटे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।